बड़ा है और चौड़ा है ।

क्रिकेट बहुत ही लोकप्रिय गेम है। इसे पुरा देश में --

गेम होते हैं | लो यहाँ --

जो देखने में काफी खूबसूरत है।

बहुत सारे लोग नदी के इस पार ओर उस --

यह बॉट के एक आदमी होता है जो हमे चलाकर --

इस बोट के थ्रू इस नदी में --

यह एक रेलवे पटरी है।

यहाँ पर एक गॉड फादर होते है।